जिसमे तीन कलर दिखाई गए हैं| केसरियासफेदहरा और बोहोत सुन्दर हैं।

केनरा बैंक का एटीएम है | कुमराला बहादुर शाखा ब्रांच हैं और इसमें सामने एक एटीएम मशीन दिखरी है।

सामने एक रोड दिखाई दे रही है रोड अच्छी नहीं है इसमें एक बस खड़ी है बस के ऊपर उमा लिखा हुआ है बस के सामने बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं जिनको हम सो प्लांट भी कह सकते हैं। बिल्डिंग काफी ज्यादा एरिया में है।

इस दृश्य में स्विमिंग पूल है पर स्विमिंग पूल में पानी बिल्कुल भी नहीं है।

कुछ सो प्लाट हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत अतिसुंदर --

काफी लाइट है लाइट से फ़ूड काउंटर जगमगा रहा है निचे ग्रीन कलर की कारपेट बिछे हुए हैं और कुछ आदमी लोग बैक साइड में चेयर लगा के बैठे हैं।

इस पिक्चर में किसी मैरेज फंक्शन या बर्थडे फंक्शन --